ये एक रेलवे स्टेशन है यहाँ पे एक पटरी दिखाई दे रही है समाने एक जेंट्स खड़े हुए है इन्होने नीले रंग की शर्ट पहनी हुए है।

बहुत सारे बॉडी लोशन रखे हुए है ऊपर फुग्गारे लगे हुए है सामने एक सीढ़ी दिख रही है उसके पास में एक जंगला लगा हुआ है।

यहाँ पे दो दुकाने दिखाई दे रही है एक पे केयर मेडिसिन लिखा हुआ है उस पे एक छोटा सा लड़का और एक लड़की खड़ी हुई है।

कुछ लोग नीचे बैठे हुए है फर्श बिछा हुआ है सामने एक डिग्गा दिखाई दे रहा है उसके पास में दो लेडीज बैठी हुई --

ये महात्मा गाँधी जी की मूर्ति है ये पिले रंग की बनी हुई है इसके पास में दो पट्टिये रखे हुए है।

ये एक गार्डन है इसमें एक कारपेट बिछा हुआ है रेड और ब्लैक रंग का इसमें--

ये एक नदी है इसके किनारे पे एक पूल बना हुआ है यहाँ पे दो तीन लड़के जा रहे है।

दो बत्तख थोड़े आगे चल के ख बैठी हुई है नीचे हरा- भरा गार्डन है सामने एक लड़की खड़ी हुई है दो तीन खम्बे है।

ये एक पुराना किला है यहाँ पे दो लेडीज़ खड़ी हुई है उसके हाथ में बैग है उसने काले रंग के कपडे पहने हुए है।

स्टूल पे कुछ सामान रखा हुआ है जिस पे अपना दाम लिखा हुआ है कुछ पार्ले जी --

ये एक शहर है इसके दोनों साइड बिल्डिंग बनी हुई है बिच से सड़क जा रही है सामने एक बोर्ड लगा हुआ है।

एक एल. इ. डी सामने है उसके आसपास लाइटिंग लगी हुई है एक लड़की मोबाइल देख रही है उसके पास में एक --

ये एक स्टेज है यहाँ पे कुछ लड़किया बैठी हुई है कुछ लड़किया खड़ी हुई है उनके बिच में एक लड़का है जिसके हाथ में एक झंडा है।

इन ने साड़ी पहनी हुई है इनके पीछे एक पॉटर लगा हुआ है एक ऊपर बोर्ड लगा हुआ है जिसके पास में एक--

दो ऑटो है एक का रंग हरा और पीला है उसके अंदर एक लड़का बैठा हुआ है एक लड़का खड़ा हुआ है साइड में एक ऑटो और रखा हुआ है।

यह एक स्कूल है और यहाँ पे कुछ लड़के बैठे हुए है उनके आगे बेंच रखी हुई है जिस--

यह एक प्लेस है यहाँ पे दो गेट लगे हुए हैं ब बहुत अच्छे से सजे हुए हैं।

कुछ मुर्तिया अंदर रखी हुई है एक बड़ा सा पेड़ है सामने एक नदी दिखाई दे रही है एक चौतरा टाइप का बना हुआ है।